पीछे शटर भी लगे हुए हैं।

जो कि वाइट कपड़े से ढकी हुई है।

कुछ लोग खड़े हुए है जो की--

जो कि टैटू की शॉप है।

अंडे रखे हुए हैं और--

गुटके रखे हुए हैं। मसाले रखे हुए हैं।

ये कोई हॉस्पिटल का सीन दिख रहा हैं।

बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा हैं।

जहाँ पर तरह-तरह के--

जहां पर बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रही हैं।

दूरपेड़ भी नजर आ रहे हैं।

साइड सामने ग्रिल भी नजर आ रही हैं जो काले कलर की हैं।

दूर गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं।

ये एक आलीशान इमारत नजर आ रही हैं।

और इस इमारत को देखने आए हैं।

जो की खेत में बना हुआ है।

अच्छी खूबसूरत लाइटें लगी हुईं हैं और डेकोरेट करा हुआ हैं कुछ कलरफुल --

कोई स्कूल के प्लेग्राउंड का पिक्चर दिख रहा हैं।

और एक कचरा उठाने वाली गाड़ी भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बच्चे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

ये एक स्टेशनरी का पिक्चर है।

जैसे बॉल सॉफ्ट टॉयज बार्बी डॉल --

जिसकी दीवारें काँच की हैं।

हॉस्टल की बिल्डिंग दिख रही हैं।

उसके सामने दीवारें लाइटें जल रही हैं।

एक अंकल चेक्स वाली शर्ट पहने खड़े हैं।

टेबल और चेयर लगी हुई हैं।

जहाँ पर बहुत सारीबाइकें और काइनेटिक --

ये कोई रोड का सीन दिख रहा है।

बिल्डिंगें भी बनी हुई नजर आ रही हैं।

आलू टमाटर गोभी बैंगन भिंडी--

तीन केशे डले हुए हैं जो कि नीले कलर के हैं।

टेबल और चेयर लगी हुई है।

लाइटे भी जलती नजर आ रहीं हैं।